पत्ता गोबी पकी हुई दिखाई दे रहे है पत्ता गोबी से हमारे घर मे सब्जी पूरी और पराठे और सलाद भी बनाया जाता है।

शायद ये मछली पकड़ रहे होगे इस नाव को शांत जल मे बहते हुआ देखना बहोत अच्छा लग रहा है ये नदी बहोत ही चौड़ी है ।

येह डिब्बे अलग-अलग कलर के और बहोत सारे दिखाई दे रहे है जिनमे आदमिओ के इननेर वेयर्स रखे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ इस फोटो में सामने एक लाल कलर की गाड़ी रखी हुई है जिसमे से एक आदमी उतरते हुए दिखाई दे रहा है उसके सामने भारत्त का झंडा हुआ लगा है यहाँ एक बोर्ड लगा है जहाँ गौरी सर्विस सेंटर लिखा हुआ है।

यहाँ हम बहुत सारी बिल्डिंग देख सकते हैं सबसे शुरू मे जो बिल्डिंग है उस पर श्री जय गोपाल छगन लाल मिठाईयों की दुकान है।

सामने बाइक बहुत पार्क दिखाई दे रही है और एक पेड़ दिख लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ लोग नीचे बैठे हुए है।

यहाँ दुकान के ऊपर बहुत बडे बडे अक्षरों में दुकान का नाम वैश्वानि बेकरी लिखा हुआ है और उसे लाइट से डिस्प्ले किया गया है।

इस दुकान पर सभी प्रकार के केक पेस्ट्री आइसक्रीम वगैरा सामान मिलते है।

इसके नीचे बहुत सारी दुकान दिखाई दे रही है जिनमें से एक किराना की दुकान है कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है और सामने कुछ बाइक पार्क है।

और ऊपर बडे बडे अक्षरों में हॉस्पिटल का नाम कुरेदा गया है जिसका मारवार हॉस्पिटल लिखा हुआ है।